यह रूम काला रंग और सफेद रंग से पेंट किया गया है ऊपर में लाइट जल रही है।

यह एक नाटक चल रही है।

यह एक मेशेन और फोन चार्ज करने क्या का भी दिखाई दे रही है।

एक लैपटॉप और कीबोर्ड भी दिखाई दे रही है।

और काला रंग की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।